जिसमें की दो व्यक्ति एक नाव पर सवार हैं।

एक ऑरेंज कलर की कुर्सी दिख रही है।

एक और कैरेट दिख रहा है जिसमें मछली रखी हुई है।

बैठने वाला बैठक रखा हुआ है नीचे टाइल्स लग दिख रहीं है।

जिसमें कई सारे बच्चे दिख रहे हैं जो कि कुछ क्राफ्ट वगैरह बना रहे हैं।